साथ में छोटे-छोटे घास है जिससे बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है लाइट सुविधा है पानी की सुविधा है हर चीज की सुविधा है।

आप अंदर नहीं जा सकते है जब एंट्री की गेट खुलती है तभी यहाँ अंदर जाने की व्यवस्था होती है साथ ही यहाँ पार्किंग का भी बोर्ड लगा है।

ई ह बैडमिंटन खेलने की जगह यहाँ बैंडबिंटन खेल रहे है चार लड़के एक ब्लैक कलर में एक नीले कलर में एक काले कलर में एक सफ़ेद कलर में।

ई है इंडियन पेट्रोल पम्प रेड कलर का बोर्ड लगल ह।

ई मंदिर के बाहर क दुकान। यहाँ दुकान प हर रंग क गुल-फूल मिलत बा। माला ह सफ़ेद कलर क माला ह। गेंदा क माला --

एक गुलाबी कलर का बहुत ही अच्छा लागत हियदीवाल सफेद सफेद जमीन इतना अच्छा प्रतीत होता की पूछअ मत।